एक बहुत बड़ा मैदान है इसमे बड़े-छोटे पेड़पौधे लगे हुए है पेड़पौधों का रंग हरा है।

जिनका रंग गुलाबी और सफेद है वही बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए है जिनका रंग सफेद नीला हरा है।